की बहोत ही अच्छी कलाकारी की हुई है।

बोरियां रखी हुई हैं जैसे चावल लाई चुरा के लिए और भी सामानें मिलती हैं ऊपर बोर्ड लगा है।

इतना सुंदर यह कोई मंदिर का ही संस्थान है यहां पर हमें--

कोई भी बच्चा फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है यहां पर--

नीचे एक मेहरून कलर की कारपेट बिछी हुई है टेबल भी और दिख रहे हैं।

घर के द्वार पर झाड़ू लगाता हुआ एक छोटा बच्चा हमको दिखाई पड़ रहा है और--

यहां पर एक सरक जो हमें दिखाई दे रही है इस सरक पर कुछ लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं।

चारों तरफ इस जंगलों में पानी भी लगी हुई है बरसात के कारन--